ऊपर डांस अ सिखाते हुए नजर आ रहे हैं।

इन दृश्य में बहुत सारे घर है।

इस दृश्य में शादी का माहौल है।

एक सूरज नजर आते हुए दिख रहे है।

डिब्बे रखे हुए नजर आ रहे हैं कैमरे भी दिख रहे हैं।

एक ब्लू कलर के डिब्बा दिख रहा है।

उधर पड़े हुए पर्दे दिख रहे हैं।

दिवाल पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं।

एक सीट शिटर गिराया हुआ है।

नीचे शटर गिराए हुए हैं।

इधर कार लगाए हुए हैं बाइक भी हैं।

नीचे बड़े बड़े कार्टून पड़े हुए हैं।

बैल दिख रहे हैं एक कुआं छोटा सा दिख रहा है।

शीशे दिख रहे हैं शीशे के अंदर बहोत सारे लोग दिखे रहे हैं।

इन दृश्यों में एक स्टेज दिख रहा है स्टेज पे रखे हुए कुर्सी दिख रहे हैं।

में कभर लगाए हुए हैं इनके कलर ब्लैक एंड ब्लू है।

नीचे एक डिब्बा के ऊपर फॉर्चून लिखा हुआ है।

व्हाइट पे कागज चिपकाए हुए हैं ग्रीन भी हैं।

ब्लू कलर के दीवाल हैं रेड भी रैक दिख रहे हैं।

शीशे के अंदर रखे हुए हैं।

इन दृश्य में एक झंडे दिख रहे हैं।

ऊपर फ्लैग फरते हुए नजर आ रहे हैं।

नीचे चुना से मार्किंग करे हुए दिख रहे हैं।

लाइट जलते हुए नजर आ रहे हैं।

बिस्किट दिख रहे हैं कुरकुरे नजर आ रहे हैं।

कार लगा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

बड़े बड़े कार्टून भी नजर आ रहे हैं।

खीड़की दिख रहे हैं जो की लोहे से बंधे हुए हैं।

दृश्य में रेक पे अलग अलग सामान पड़े हुए हैं।

इन दृश्यों में एक टेबल के ऊपर एक बड़ा सा टंकी रखा हुआ है।